यहाँ पर रोड में एक डी.जे. ल लगे हुए हैं उसमें काफी सारे साउंडस लगे हुए हैंगे और रोड में साइड में काफी लंबी-लंबी बिल्डिंगे उची-उची बिल्डिंगे बनी हुई हैं और निचे दुकानें हैं।

एक म्यूजियम हेगा जिसके कांच के अंदर काफी सारी पुरानी चींज़े रखी हुई हेंगी।

यहां पर शादी की डेकोरेट हुई है और यहां पर काफी सारे फ्लावर्स लगे हुए है उसको पर्दो और फलावर्स झूमर से डेकोरेट किया गया है सामने सोफा रखा है।